जैसे की आप देख रहे है इस सीन में यह बहोत पुराना सीन है। इस में --

बच्चे यहाँ पे सुंदर तरीके से अपना डान्स परफॉरमेंस तैयार कर रहे हैं और सीख रहे हैं।

जैसे कि आप सीन में आप देख रहे हैं। यहाँ सब ये हॉस्पिटल है। जिसमे सभी लोग अपने इलाज और चेकउप करने के लिए आये हुए हैं। सभी ने मास्क पहन रखा है।

निकल रहा है गुजर रहा है रास्ते से--

जैसे कि आप सीन में देख रहे हैं यहाँ फैशन पॉइंट का एक शॉप दिख रहा है।